इस इमेज में सामने देखिएगा डबल स्टोर दुकान दिखाई दे रही है और नीचे ढेर सारा सामान भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने दुकान दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारी बॉटल्स नजर आ रही हैं।

और सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने एक स्टेट दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे हैं।

और एक ट्रेन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक वायर भी दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक लड़का डांस कर रहा है उसने सर पर टोपी और जूते पहने दिखाई दे रहे हैं।